ये हमारे इलाका का एक हॉल है।

यहाँ पर चारो तरफ ढेर सारा बड़ा बड़ा मोबाइल फ़ोन का टावर भी है।

बनने का प्रोजेक्ट का काम बहोत जल्द ख़त्म हो जायेगा।

दो सौ लोग काम करता है एक कारखाना में ढेर सारे बेसिन्स है।

प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर प्री नर्सरी से क्लास टेन तक पढ़ाया जाता है।

ये जगह बहोत ही सुन्दर है।

ये दूकान बहुत ही छोटा है | एक लोग ऐ दूकान संभालता है।

ये हमारे इलाका का एक स्कूल है।

इस घर के सामने एक सड़क है और --

यहां पर ढेर सारे घर है जो अभी भी --

यहाँ पर पंद्रह वेटर्स काम करता है।

ऐ गेट काट के फेन से बनाया गया है।

और सड़क के किनारे पे एक बड़ा सा मार्ट है |

यहां पर मार्ट में लोग है मॉर्निंग वाक --

ऐ हमारे इलाका का एक जिम सेंटर है ऐ जिम सेंटर बहुत ही बड़ा है।

सुन्दर सा लाइटिंग्स भी है | यहाँ पर रात पे भी खेला जाता है।

एक बड़ा सा गेट है | इस गेट के ऊपर एक सुन्दर सा भी है |

यहाँ पर बीस लोग काम करता है।

एक बड़ा-सा बिल्डिंग भी हे इस ग्राउंड में।

ये हमारे इलाका का एक क्रिस्टन --

यहाँ पर स्टूडेंट लोग कागज को काट के --

इस मार्ट के चारो तरफ ढेर सारा बड़ा-बड़ा पेड़ है।

यहाँ से लोग जाता-आता है ये एक रूरल एरिया है।

ये हमारे इलाका का एक रेस्टोरेंट है।

ए जिम सेंटर अंदर से बहुत ही बड़ा है और सजाया गया है इसको बहुत ही सुन्दर --

ये हमारे इलाका का एक रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट बहुत ही बड़ा है --